मुझे यहां पर कुछ उम्म रखा हुआ दिखाई दे रहा है येलो कलर और वो।

नदी है नदी में पानी है और वो सिल्वर कलर और मुझे भूरा सा दिखाई दे रहा है।

दो तीन प्रकार की लाइट लगी हुई है वो ग्रीन है ऑरेंज है येलो है और ब्लू कलर --

वगैरह छोटे छोटे पड़े हुए हैं यहाँ लोहे कि जंजीरों से बंधी हुई है वो --

सामान दिख रहा है सारा सामान मुझे डिब्बा डिब्बी में ही दिखाई दे रहा है और ये--

यहाँ पर मुझे एक बिल्डिंग दिख रही है वो मुझे पर्पल कलर की और ए सिल्वर कलर की --

इ दुकान दिखाई दे रहीं हैं मुझे बड़ी सी और दुकान में मुझे एक चेयर --

और मैदान में मुझे आसमान दिखाई दे रहा है सिल्वर कलर वाइट कलर और पर्पल कलर --

यहाँ पर मुझे एक रूम दिख रहा है ये रूम में एक बैठे बैठ पर --

और दो कंम्मल रखी हुई हे और और दिवाल का कलर मुझे व्हाइट दिख रहा हे जो पर्पल कल --

भी दिख रहा है और यहाँ पर कुछ सामान रखा हुआ है और इधर वाइट कलर के ते --

रेड कलर की साड़ी पहनी हुई है उधर वाइक रखी हुई है इधर वज्जा का कलर मुझे --

कुछ रखा हुआ है यहां पे बोरियां पड़ी हुई है वाइट कलर की नीचे सिल्वर कलर दिख रहा--

रेपीडो बॉक्स भी पड़े हुए हैं और यहां पर मुझे बड़े बड़े पेड़ भी दिखाइ वो ग्रीन कलर के हैं और ऊपर मुझे येलो कलर भी दिखाई दे रहा है।

बड़े हुए हैं यहाँ मकान भी बना हुआ है और यहाँ गाड़ी पे कोई --

सामने मुझे रोड दिख रहा है रोड पर एक खंभा लगा हुआ है वो लाइट का है।